यह एक सेलून है।

सेलून में एक लड़का फेसियल करवाने के लिए आया हैं फेसियल करते हुए हैं एक तस्वीर ले रहा हैं जिस तस्वीर में अपना ही चहरा उसे फेसियल पे दिख रहा हैं और मोबाइल रखे हुआ हैं सामने चश्मा रखे हुआ हैं।

यह एक फाईव स्टार का होटल है और या हो सकता है आप को अपार्टमेंट मिल जाए।

और इसमें कई अच्छे क्वालिटी दिए है जैसे बल्ब लगे हुए है और नीचे का एक दम टाईल्स लगा हुआ है ब्लेक कलर शीशे लगे है।